यह एक खुल्ला मेदान दिखाई दे रहा है।

सामने एक महेंद्र पाठक चक्की के दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मानसरोवर यस्टरेड का दृश्य दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप में गहरी रंग की लाइटे भी दिखाई दे र --

यह एक रेडीमेड की दुकान का नजारा है कुछ महिलाएं --